दिन का यहां पर समय है पानी भी यहां पर बहुत थोड़ा है लेकिन जगह पाने की बहुत ही ज्यादा यहां पर दिखाई दे रही है।

बहुत बड़े यहां पर बिल्डिंग का काम है किया जा रहा है यहां--

दो मोटरसाईकिले भी यहां पर बाहर खड़ी हुई हैं ईंटे भी बहुत सारी इकट्ठी यहां पर खड़ी है पीछे भी ईमारत खड़ी है सामने यहां पर--

पोस्टर दिखाया गया है बैनर का नाम है दी वरदान फैमिली अस्पताल।

बहोत ही बड़ा नृत्य संगीत कार्यकम यहां पे चला हुआ है छोटे छोटे बच्चे फ्रॉक पहने है वाइट कलर मे कोई पिंक कलर में यहां पर दिखाए गए है।

पर्दे पीछे लगे हुए है रेड कलर के--

एक छोटा बच्चा है एक बड़ा बच्चा है बच्चे ने एक ने जुराब पेहनी हुई है एक ने नई पेहनी हुई दीवार बहोत ही अच्छी सुंदर है।

बच्चा और दिखाई दे रहा स्केटिंग करता हुआ पीछे बहुत ही तगड़ा बड़ा पहाड़ है।

दीवार के ऊपर रुद्रा नाम से यहां पर पेंटिंग कि हुई है बहुत ही सुंदर रेड कलर से और दीवार बहुत ही बड़ी है तारों के साथ यहां पर खड़ी है।

रैकों के ऊपर यहां पर ऑइलो की कैन बहुत सारी दिखाई गई है।

और यहां पर फ्रीडम नाम से हैं और एवरी दवा के नाम से यहां पर फोर्ड है बेबी के पोस्टर यहां पर लगे हैं इसके ऊपर बेबी के फूड्स के ऊपर --

करियाने की ये दुकान है छोटे-छोटे यहां पर सामान रखे हैं मैगी मसाला और भी बहुत मसाले यहां पे फेविक्विक हैं यहां पे फॉर्चून का तेल है।

लेबर लगे हुए हैं यहां पर और खिली धूप है यहां पर आसमान खु--

बहुत बड़ा यह ऑफिस है यहां पर और एक बस एक ही आदमी यहां पर पहले आया हुआ है लाइटें यहां पर दिखाई जा रही हैं बहुत चसी हुई।

बहुत ही बड़ा ये पोस्टर है यहां पे दिखाया जा रहा है रेड कलर के फ्लावर से ऊपर बहुत ही बड़े क्वांटिटी में यहां प दिखाई दे रहे हैं।